जूत्ते जो हैं उसके पीले पीले नजर आ रहे हैं पीछे गुफा सी नजर हमको आ रही है।

भी जैकेट पहनना है और नीचे काले रंग की जींस पहनी हैं।

इस फोटो में काफी सारा सामान नजर आ रहा है एक बोर्ड लिखा है जीसपे बचत लिखा है सेव लिखा है।

फरश जो है सफेद रंग के टाइलों का है ऊपर काफी सारी लाइटें नजर आ रहा है हमका।

एक बच्चों की गाड़ी नजर आ रही है जो झूले वाली गाड़ी होती हैं। दिन का समय है।

टिक फ्री है शैंपू नजर आ रहा है जी सारा कुत्तो--

ए_सी रुम फ्री वाई फाई संदीप का नंबर है जिसमें लिखा है सेवन जीरो टू सेवन जीरो फोर थ्री वन थ्री टू एक कला--

जोकि नाच रही है पीछे लिखा है व्यू मोर ऑटो पे ऑप्शसन इन कंट्रोल पैनल लड़की के बाल खुले हैं जी ऊपर उसने काला रंग का टो--